ये पार्क है यहां गाछ है यहाँ नेचर्स नेचर्स है एंड यहाँ पे जाने में बहुत सुकून मिलता है।

तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। देखा जाये तो इस गाड़ी का कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और शो भी बहुत मस्त --

काले प्लेट में सजा कर दिया गया है जो की दिखने में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है और इसमें कलर भी ब्लैक है।

जिन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है। एक आदमी टोपी भी पहना हुआ है और ये छत बहुत जी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। छत का कलर सफ़ेद रंग का है और यहाँ बाल्टी भी है बाल्टी का रंग लाल है।

फ्लावर पॉट के बाहर में बगल में ही टेबुल और साइकिल मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारा इंसान भी है और ये पेंटिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ।

गिन चुन के चार सोफ़े होगें। बहोत ही खूबसूरत है इसका रंग ब्लू है और इसमें बहोत से सुन्दर से कलाकारी यानी डिज़ाइन भी की गयी है।